सेंटर में एक आदमी है जो जिम कर रहा है। हाल्फ टी-शर्ट टाइप का ऊपर टोपी साइड का पहना हुआ है। बॉडी बहुत सुन्दर बनाया है। जूता पहना हुआ है जीन्स पहना हुआ है।